यहाँ एक दिखाई दे रही है जिस का कलर पीला दिखाई दे रहा है फूलों की मालाये टंगी हुई दिखाई दे रही ।

यहाँ एक गैलरी दिखाई दे रही हे इसमें ब्रेंचेज दिखाई दे रहे बच्चे बेठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये ढोलक मंजीरे हुए दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें अँ बाल्टियां रखी हुई दिखाई दे रही है। डस्टबिन रखे हुए --

दिखाई दे रही है| पेड़ दिखाई दे रहे है| आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का कलर नीला दिखाई दे बाउंड्री दिखाई दे रही है।

यहाँ एक किला बना हुआ दिखायी दे रहा है इसका कलर पीला दिखायी दे रहा है खिड़कीया बनी हुई दिखायी दे रही है।